एक हॉल में बोहत सारी भगवान की गुम्तिया रखी हुई दिखाई दे रही जो सारी तस्वीरें अलग-अलग कलर की माला पहने हुए दिखाई दे रही--

--और बोहत सारे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है नाव का कलर अ नीला दिखाई दे रहा है. नाव में बेंच लगी हुई दिखाई दे रही है।

बोहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसपे क्रोडीमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी रायपुर रायगढ़ का ये बोर्ड लगा दिखाई दे रहा है जिसके नीचे कुर्सीयाँ रखी हुई दिखाई दे रही कुछ --

एक मैदान दिखाई दे रहा हैं जिसमें एक मकान बनता दिखाई दे रहा हैं जिसके बहोत सारे बीम पिलर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जिनमें तार बँधे हुए दिखाई दे रहे हैं क्रेन मशीन दिखाई दे रही हैं जिसकी--